ओइल के डब्बे है कुकिंग ओइल है एरियल है।

और भी अ कपड़ो के साबुन है सुन्तुर सोप दिख रहा है।

इसमें जीन्स पेनी हुई है बोहोत सारे पेड़ पोधे है।

और उसने शूज पेन रखे है ग्रीन कलर के खम्बे खड़े हुए है।

यहा पे नागर बना ऐसा लिखा हुआ प्लेट दिख रही है।

उ उम्म बीच में रास्ता आजू बाजू झाड़ी है एक झाड़ के नीचे साइकिल खड़ी हुई है जाली जाली की।

ये फूलो की शॉप है यहाँ वेराइटी वेराइटी इसके फुल है येलो पिंक --

वाइट ग्रीन और टोकरिया भी रखी हुई है और ये आदमी खड़ा है उसका शर्ट और पेंट से दिख रहा है वो आदमी नही दिख रहा है।

घड़ी दिख रही है काउंटर है बुक है।

यहाँ टेबल है इस टेबल पे ना मस्पिन रखा हुआ है चेयर है ग्रीन कलर की चेयर रखी हुई है लाइट लगी हुई है फ्रेम लगी हुई है।

यह एक नर्सरी है यहा बोहोत सारे फ्लावर पॉट पड़े हुए है।

और यहा पे ग्रीन कपड़ा दिख रा है जाड़ी है।

यहा पे पंजाब नेशनल बैंक का ए_टी_एम है।

कूटर रुकी हुई है कार रुकी हुई है डेस्टबिन है।

बच्चे खड़े हुए हैं वहां के साइड कुछ नहीं अंदर के साइड में--

और लाइट के खम्बे भी खड़े हुए दिख रहे है बादल दिख रहा है।

ये एक जिम कोचिंग सेंटर है यहा पे जिम को--

अंड पना है और उसका मु ढका हुआ है।

और बड़ा सा पेड़ है यहां पे और पापुलेशन चेक ऐसे लिखा हुआ है।

ये एक गार्डन है और यहा पे कम्पाउन के जेसे--

फोर व्हीलर के एक फोर वव्हीलर के पास दो लोग खड़े हुए है एक बड़ी औरत है और एक छोटी लड़की है।

और बादल दिखरे है लाइट के खम्बे दिख रहे है।

यह एक सुंदर सी बिल्डिंग दिख रही है जो पुराने जमाने में हुआ करती थी यहाँ पे रास्ते पे --

कुछ छोटा छोटा ऐसे खड्डे के ऐसा लग रहा है बादल दिख रहे हैं पेड़ दिख रहे हैं।

और कुछ लोग सामन खरीदने की कोशिश कर रहे है।

ऑटो के अन्दर से लोग दिका-दिखा रहे है बाहर वाले देख रहे--

इस शॉप का नाम राजनेद्र फिश सेण्टर फिश चिकन मटन मिलता है।

ये एक बस स्टेंड है यहा पे छे--

और दूसरी बस वाइट कलर की है चार बसे ब्लू कलर --

यहा पे वंडर स्पोर्ट्स ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है।

ये एक पुरानी सी इमारत है कमान कमान बनने वाली--

कोई आदमी अन्दर के साइड है कोई बाहार के साइड --

इस पे ये ये अं खेलने वाले चीज है।

और वाइट दिखरा है मंदिर के जेसे--

और साईकल पे एक लड़का जा रहा है।

फोर व्हीलर दिख रहे है और तिन फोर व्हीलर है।

इसी वो मानस मंदिर ओम ऐसे लिखा हुआ--

छोटे छोटे मंदिर दिख रहे है एक लड़की मोबाइल लेके खड़ी है।

काउंटर पे ये लोग कुछ पूछ ताज कर रहे है।

रास्ता है रास्ते पे फॉर विलर --

और इन्होंने फोर व्हीलर खड़ी हुए है लाइट के खंबे है झाड़ है।

बहत सरे भीड़ है यहाँ पे ढोल तसे बज रहे है ।

पानी की बोटल है।

लोग यहा पे योगा करने की कोशिश कर रहे है यहा के आमने पे--